इस होटल के आगे बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है।

इस चित्र में बहुत सारे आदमी भी मौजूद है।

इस चित्र में घर में बहुत सारे खिड़कियां लगी हुई हैं।

इस आश्रम के बाहर में कुछ बाइक खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर मे एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक नदी का है जहां पे बहोत सारे आदमी आर पार होते हुए नजर आ रहे हैं।

इस घर में बहोत सारे खिड़कियां दिखाई दे रही है।

इस कार के पीछे एक गाड़ी खड़ी है।

इस चित्र में घर बोहत बड़ा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में तीन गुंबज दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर मछली बाजार का है।

इन लड़कियो के बगल में एक लड़का बाइक पे खड़ा है।

इस तस्वीर में किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाया गया है।

इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे एवं बच्चियां दिखाई दे रही हैं।